सामने कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं।

इसमें में कुछ लकड़ी के बंबू भी दिखाइ दे रहे हैं।

पर एक काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

लकड़ी की कुछ रेलिंग भी दिखाई दे रही है।